और यहां पर एक क्यू_आर कोड रखा है।

आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि --

आप इस पिक्चर में देख रहे हैं।

है कि यहां पर एक दुकान दिख रहा--